यह एक मोबाइल शोरूम है पास में एक कंप्यूटर का भी शोरुम है वहां पर दो व्यक्ति कंप्यूटर चला रहे है।

शोरूम है जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोबाइल की दुकान बहोत ही शानदार है तीन कुर्सियां खाली भी है।

खेत है खेत में एक गाड़ी खड़ी है।

पास में एक्टिवा भी खड़ी है।

कार अंदर की तरफ जा रही है।

और गाड़ी बनाने के सभी पार्ट्स यहां पर मिलते हैं।

यहां एक लड़का झाड़ू लगा रहा है।

एक ग्रे रंग की भी इमारत है।

पार्किंग में गाड़ियां पड़ी हुई है।

यहां ज्वैलरिया हैं नेकलेस भी रखे हुए हैं।

बहोत सारी ज्वेलरी हैं गले के हार लगे हुए हैं।